यहां पे दो खिड़कियां भी दिख रही है।

यहां पे बच्चों के खेलने का बहुत सारा संसाधन है।

एक महिला चेयर पे बैठी हुई है ओ महिला एक बच्ची को प्राइज दे रही हैं।

पुल बहुत बड़ा है।

यहां पे बहुत से लोग खाने भी आए हुए हैं।

यह एक पंडाल का चित्र है यहां पर चार महिलाएं हैं जो नृत्य करते हुए फोटो खींचा रही है।

यह एक दुकान का चित्र है।

यहां पे बहुत सारा बोरा भी है अंदर में तीन चार लोग है।

यह एक पेट्रोल पंप का चित्र है।

एक बाइक है एक ओटो भी है ये ऊपर में बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं ।

ऊपर में बहुत सारे लाइट लगाए गए हैं एक स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है।

यह एक महाविद्यालय का चित्र है।

यहा पे बहुत सारे लोग भी है। कुछ बाइके भी है।

एक लाइन का खंबा भी है आसमान का कलर ब्लू और व्हाइट है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है जिसका नाम मुकुंद पंडित सरोज इलेक्ट्रॉनिक्स है।

यह एक स्कूल का चित्र है यहां पे कुछ बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

एक क्षीशिका भी है जो वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

यह बहुत बड़ा है यहां पर एक रेस्टोरेंट का बैनर भी लगा हुआ है।

ऊपर मे एक आदमी है जो मोबाइल चला रहा है।

नीचे में भी कुछ आदमियां है एक वाइल्ड क्राफ्ट का बोर्ड लगा हुआ हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का चित्र है। जहां पे काउंटर पे दो लोग बैठे हुए है एक फोन पे का स्कैनर भी हैं।

बहुत सारे पेड़ है। यहा पे बहोत सारे चेयर भी है जो रेड और येलो कलर का है।

एक आदमी साइकिल से भी है। यहा पे बहुत सारे पेड़ हैं।